और ऊपर लाइट भी लगी हुई है और यहां पे एक शटर भी दिखाई दे रहा है।

उनके पास कुछ आदमी बैठे हुए हैं और वह मछली काट रहे है।

सामने कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

दो टंकी भी लग रही है।